एक कबीर मॉल है जिसके बा बाहर कबीर मॉल लिखा हुआ है और कुछ रेलिंग भी बनी हुई हैं और नीचे कुछ गाड़ियाँ कारें खड़ी हुई हैं।

साइकिलें खड़ी हैं। स्कूटी गाड़ी और एक रास्ता है जो एक आदमी जा रहा है।

एक लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी में एक कुर्सी और टेबल रखा है और इसके बगल में भी एक कुर्सी और टेबल रखा है उसमें पेपर और बुके और हेलमेट और बोतल रखी हुई हैं।

और और व और लाइट भी लगी हुई हैं। अ ए_सी यां भी लगी हुई है और बाहर कुछ कारें खड़ी हुई हैं।

एक छोटा-सा वि मार्ट है जिमरत में कुछ बाहर पोस्टर भी लगे हुए हैं।

और ऊपर कुछ लोग खड़े हुए है और कुछ गमले भी रखे है।

एक बड़ा सा मॉल है जिस मॉल में कुछ गुलदस्ते भी रखे हुए है और हरा पेड़ भी लगा हुआ है।